यह एक ऑफिस जैसा लग रहा है।

सामने ही एक दरवाजा जैसा बनाया गया है जहां उसके ऊपर दो मयूर रखे गए हैं।

पार्क में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी है।

कई लोग यहां पे आए हैं या फिर यहां से गए हैं।

एकदम सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसका कलर में है।

लैंप पोस्ट का कलर ब्लैक में है।

तालाब के आजू बाजू बहोत सारे घास उगे हुए हैं।

आसमान का कलर सफेद और नीले रंग में दिखाया जा रहा है।

बच्चों ने शूज पैंट और टी शर्ट पहना हुआ है।

यह एक डाकघर जैसा प्रतीक हो रहा है।

मछली डब्बों के अंदर भी दिखाए गए हैं।

यहां पे भारत आंदोलन के एक छवि भी दर्शाया गया है।

यहां पे दो आदमी खड़े हुए हैं।

रोशन को देखने के लिए बहोत सारे लोग एकत्रित हुए हैं।

यहां ऊपर बहोत सारे फलके लगी गयी हैं।

लाइट्स भी दिख रहा है।

आदमी सामने के तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं।

भगवान के चरणों में एक मोर का भी प्रतिमूर्ति रखा गया है।

यह एक सुंदर सा पार्क जैसा लग रहा है।

यह किसी बस स्टैंड रेलवे स्टैंड या फिर एयरपोर्ट का स्टैंड जैसा लग रहा है।

कई सारे लाइट ऊपर सीलिंग में लगाई गई है।

यहाँ पे काफ़ी सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

कई लोग बस में चढ़ने के लिए जा रहे हैं।

शायद से सामने वाले आदमी नाई है जो की बाल कटाने के लिए रेडी हो रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे साइन बोर्ड भी है।

सामने बहोत सारे वाहन भी खरे हुए है।

बहुत सारे लाइटे भी है।

फ्रिज के ऊपर कुछ पानी के बॉटल्स भी नजर आ रहे हैं।

यह एक स्कूल का कैंपस जैसा लग रहा है।

एकदम सामने ही जिम का एक मशीन दिख रहा है जहां पे बैठने के लिए भी सुविधा है।

जिम के फ्लोर के कलर ब्लैक दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने ही बहोत सारे पेड़ हरे भरे हैं।

यहां पे हमें टेस्ट ट्यूब्स और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी दिखाए गए हैं।

यह बंडल किसी फाइल का लग रहा है।

नोडल की ठीक सामने वेंटीलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं जहां से हल्की हल्की सी रोशनी भी आ रही है।

यह एक सड़क का फोटो है।

सड़क के दूसरी ओर एक बाइक आरोही भी दिख रहे है।

यहां पे फूड ट्रैक बोल के एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है।

यहां पे सफेद रंग के और नारंगी रंग के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं।

पिक्चर का घर देखने में राजाओं का या फिर कोई मन्दिर के स्थान का जान परता है।

उसे आदमी ने एक ब्लैक कलर के जैकेट भी पहना हुआ है।